पास मे एक लाल रंग का पिलर है यहां पे पंखा लगा है।

यहां पर पेड़ पौधे हैं बिल्डिंग बनी है जो सफेद रंग की है।

यहां पे बहोत से हिरन है जो जाल के अंदर बंद है।

इसके नीचे हरे रंग की दरी बिछी है यहां पे दो लोग खड़े हुए हैं।

यहां पे एक औरत खड़ी है आसपास दरवाजा लगा हुआ है।

यहां एक कार पे एक बैग रखा हुआ है जो काले रंग का है।

यहां पे छोटी छोटी घास उगी है यहां पे मिट्टी है इसमें पानी भरा हुआ है।

यहां पे एक लड़की बाइक पे बैठी है पास में एक आदमी अंदर को जा रहा है।

यहां पर एक बच्चा लकड़ी के बीच में खड़ा हुआ है।

लकड़ी बहुत मोटी है यहां पर बच्चों ने पीले रंग की शर्ट पहनी है।

यहां पे एक पोस्टर लगा है जो पशु संरक्षण केंद्र गौशाला लिखा है।

यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पर डी_जे लगा हुआ है।